जो के सफेद कलर की टोपी कत्थे कलर का टी-शर्ट नीले कलर का लोवर काले कलर का जूता पहना हुआ है चारो साइड बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए --

सामने एक प्लेन है प्लेन का कलर सफेद और नीले कलर का एक आदमी खड़ा हुआ--

सामने एक लड़का है जो कि सफेद रंग का शर्ट नीले रंग का जैकेट काले रंग का पैंट पहना हुआ है एक काले रंग का टोपी भी लगाया हुआ है।

सामने एक लड़का खड़ा हुआ है. लड़का ब्लूटूथ भी लगाया हुआ है ब्लूटूथ का रंग काले कलर का है।

सामने बहुत सारे लोग बैठे भी हुए है खडे़ भी हुए है बाल्टी भी रखी हुई है बाल्टी पे लाल लाल पानी भी है।

सामने एक ऑटो भी है ऑटो का रंग नीले कलर का है बहुत सारे टब भी रखा हुआ है टब का रंग हरे रंग का है।

सामने बहोत सारी ऑटो ऑटो का रंग काला और पीला कलर का ऑटो पे पैर रख के एक लड़का खड़ा भी हुआ है

एक सीढ़ी भी रखी हुई है एक टेबल भी रखा हुआ है टेबल का रंग काले कलर का है।

-- हुआ है लोहे के गेट में सफेद कलर का और पीले कलर का बना हुआ है। पीछे एक घड़ी भी टंगी हुई है।

एक आदमी खड़ा हुआ है उसके पीछे एक मन्दिर भी है चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं हरे रंग का घांस भी लगा हुआ है।